व्हाइट कलर की है पीछे की ओर झाड़ियां दिखाई दे रही है सामने की ओर यहां पर हमें ब्लू कलर का आसमान दिख रहा है।

यहां पर हमें व्हाइट कलर का फ्लोर दिख रहा है।

यहां पर हमें दिख रहा है सामने वाइट कलर का एक बो--

जिसमें कि हमें कांच लगे हुए नजर आ रहे।

ग्रीन कलर के कुछ पैकेट्स कुछ पत्तियां दिखाई दे रही है।

पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही--

सामने ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

साथ में ग्रीन कलर का पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बिस्किट है कुछ स्नैक्स पड़े हुए--

ब्लैक एंड ब्लू कलर दीवार ग्रीन कलर की।

यहां पे दिख रहे है सोफे जो कि यहां हमें--

कुछ लोग ग्राउंड में खड़े दिख रहे--

जो की यहां हमें ब्लू शर्ट में--

फ्लोर का कलर ग्रीन दिख रहा--

और यहां पर कुछ लोग खड़े भी दिख रहे--

कुछ ब्राउन और ब्लैक कलर की टाइलें लगी हुई है।

पीछे की और आसमान का कलर हमें दिख रहा है वाइट --

साथ में कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि ग्रीन येलो कपड़ों में--

जिसके ऊपर व्हाइट येलो ग्रीन कलर है।